इसमें चार चकें हैं जोकि काले कलर के हैं| पीछे दिवाल है।

एक बहुत बड़ा हॉल बना है जैसे टेंट से बना हुआ है एक लाइन से कुर्सियां लगी हैं।

एक स्टेज बना है जिसके सामने बहुत सारे फूल लगी हुई हैं और स्टेज के पीछे भी फूल लगी हुई हैं फूल रंग बिरंगे हैं कुछ पीले कलर के फूल है कुछ नीले कलर के कुछ सफेद कलर के और कुछ गुलाबी कलर के फूल हैं।

एक ग्राउन्ड है जिसमे चारों तरफ हरी भरी घास है और कुछ पेड़ पौधे है जोकि छोटे बड़े हैं वह सभी हरे भरे हैं।

उसके अंदर दो लोग खड़े हैं जोकि सामने की ओर देख के हंस रहे हैं और नीचे एक फिसल पट्टी है जिसमें से एक आदमी फिसल रहा है।

एक ग्राउंड है जिसमें चारों तरफ घास है जो कि हरी भरी है। चारों तरफ पेड़ पौधे है जो कि हरे भरे है। पेड़ पोधे बडे-ब बड़े-बड़े है और पीछे कुछ घर है।

एक दुकान है जो कि सब्जी की दुकान है जिसमे चारो तरफ सब्जी रखी है खीरा रखा है पत्ता गोभी रखा है फूल गोभी रखा है मटर रखा हुआ है टमाटर रखा हुआ है बैगन रखा है।

हाथ में का गन लिया है जो कि ए.के. फोर्टी सेवेन है गले में माला पहना है फूलों की।

एक वाटर पार्क है जिसमे बोहोत बहो सारी फिसल पट्टीया लगी है जो कि बड़ी-बड़ी हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे है जो कि हरे भरे दिख रहे --

जोकि हरे कलर की पीले कलर की और कुछ लाल कलर की और सफेद कलर की हैं।

एक मैदान है जिसमे हरी-हरी घास हैं। इसमे कुछ लोग हैं जो कि पंक्ति में खड़े हैं। ये सभी एनसीसी कमांडो है सामने एक तिरंगा है। तिरंगे के पीछे दो लोग हैं जो कि मुंह में माक्स लगाए हुए हैं।

एक सड़क है सड़क में बहुत सारी घासें हैं।

और कुछ चारों तरफ कुरसिया लगी है जोकि सफेद कलर की है और चारों तरफ दूर-दूर मे पेड़-पौधे दिख रहे है जो की हरे कलर के है।

एक सब्जी मंडी है जिसमें एक दुकान रखा है दुकान पे भिंडी रखी है कुछ आलू रखी है कुछ कोम्ड़े रखे हैं।